उ वहां पर एक डाकघर दिखाई दे रहा है और अंदर कुछ फाइल भी रखी हुई नजर आ रही हैं।

इस इमेज में यहां पर नदी दिखाई दे रही है और बोट के पास में दो लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज मे यहां पर एक हॉल दिखाई दे रहा है और यहां पर दो व्यक्ति खडे़ हुए नज़र आ रहे है।

इस इमेज मे यहां पर अमूल की दुकान दिखाई दे रही है और दो तीन लोग बाहर खड़े हुए नज़र आ रहे है।

इस इमेज मे यहां पर एक हाल दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ लोग योगा करते हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक पार्क दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ लोग खेलते हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर पिंजरा दिखाई दे रहा है जहां पर दो पक्षी बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में सामने एक अ दुकान दिखाई दे रही है जहां पर पानी पुरी का बॉक्स नजर आ रहा है।

इस इमेज मे देखियेगा यहां पर रोड पर दो तीन कार चलते दिखाई दे रही है और सामने यहां पर एक ठेला भी नज़र आता दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में यहां पर चिड़ियाघर दिखाई दे रहा है जहां पर हिरण बारहसिंगा अ घूमते हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक होटल दिखाई दे रहा है जहां पर देखियेगा अ टेबल कुर्सी नजर आ रहे हैं।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

इस इमेज में दिखेगा यहां पर एक सैलून दिखाई दे रहा है और ये व्यक्ति दाढ़ी बनाता हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है और सामने काउंटर पर दो तीन लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में दिखेगा यहां पर एक मेट्रो स्टेशन दिखाई दे रहा है और आतिश मार्केट लिखा हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में दिखेगा सामने यहां पर जिम नजर आ रहा है जहां पर कुछ लोग कसरत करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक स्टेज दिखाई दे रहा है और बीच में गजानंद जी की मूर्ति भी लगी हुई नजर आ रही है।

इस इमेज में दिखेगा सामने यहां पर एक नर्सरी दिखाई दे रही है और बैलून का डेकोरेशन भी दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक हॉल दिखाई दे रहा है और काउंटर पर एक लड़की खड़ी हो कर बात कर रही है।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

इस इमेज में देखीएगा यहां पर एक सैलून दिखाई दे रहा है और यहां पर एक लड़के की कटिंग चलती हुई नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहाँ पर एक खंडहर दिखाई दे रहा है और कही सारे बेड भी यहा पर नज़र आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक फाउंटेन दिखाई दे रहा है जोकि बंद है और आसपास कुछ पौधे भी नज़र आ रहे हैं।

इस इमेज में देखियेगा यहां पर शादी की पार्टी चल रही है सामने कुछ महिलाएं फोटो खिंचवाती हुई दिखाई दे रही हैं।